मौसम भी साफ दिख रहा है के बिल्डिंग बहोत पुरानी सी दिख रही है।

यहाँ पे एक मंदिर बड़ा -सा मंदिर भी दिखाई दे रहा है जिसका कलर रेड और ऑरेंज से किया गया है यहाँ पे कुछ लोगों के झंडे ऑरेंज कलर में लहराते हुए दिखाई दे रहे है यहाँ पे बोहोत सारे झंडे --

महिंद्रा की नई डिजाइन में ब्लैक और वाइट कलर की महिंद्रा का ड--लोगो डिजाइन किया गया है यह कांच का डिजाइन दिख रहा है और महिंद्रा की बहुत सारे कारें भी लगी हुई दिखाई दे रही है लोग महिंद्रा की गाड़ी गाड़ी देखने आए हैं ।

एक शिव की मूर्ति बनाई गयी है जिसके पीछे एक गाय भी बनाई गयी है उसके ऊपर पेड़ भी बनाया गया है और मौसम भी साफ दिखाई दे रहा है।